कुछ ऑफिस है यहां पे दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पे बहोत सारे व्यक्तियां खड़े हुए यहां पे पुलिस वाले भी खड़े हुए यहां पे आप एक बैनर भी लगा--

कुछ कपड़े स रखे हुए हैं यहां पे बगल में मिरर भी लगा हुआ है।

जो की अपनी हाथ में बाइबल ले कर खड़े है।

मैं यहाॅं पे देख पा रही हूॅं यह एक रोड है यहाॅं पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और यहाॅं पे बगल में --

मैं यहां पे देख पा रही हूं यहां पे--

मैं यहाँ पे देख पा रही हु यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है।

मैं यहां पे देख पा रही हूं यहा पे--

यहां पे में देख पा रही हु यह एक रोड है बाजू में एक गार्डन है जहां पे बहोत सारे झूले--

पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे एक कार है यहां पे।

कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे एक बड़ा सा पोस्टर भी रखा हुआ है।